बहुत ही पुराना जमाना का घर का फोटो दिखाया गया और या सब घर को बहुत ही --

यह एक नदी का फोटो दिखाया गया है यह नदी काफी ज्यादा बड़ा है |